यहाँ पर एक दीवार दिखाई दे रही है जो की सफेद रंग की है उसपे एक बोर्ड लगा हुआ है नीले रंग का इसपे सफेद रंग से कुछ लिखा हुआ है पीछे के तरफ हरियाली दिखाई दे रही है हरे हरे पेड़ दिखाई दे रहे है पीछे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो की सफेद रंग से जिस पर बोर्ड लगा हुआ है।

ये बस सड़क पे खड़ी हुई है जिस पर एक कलश की आकृति बनी हुई है अंदर देखने पर शीशे के अंदर सीटे दिखाई दे रही है जो की काले रंग की है स्टेरिंग दिखाई दे रही है आगे कुछ सामान रखा हुआ है इसपे एक वाइट रंग का बोर्ड लगा है जिसपे कुछ लिखा हुआ है।

यंहा पर एक बोर्ड लग रहा है जो की सफ़ेद रंग का है जिसपे कुछ लिखा हुआ है पीछे की तरफ पेड़ दिखाई दे रहे है पेड़ो पर टहनिया दिखाई दे रहे है जिनपे हरे-हरे पत्ते दिखाई दे रहे है।

खेत खेती दिखाई दे रही है जहां पर हरे-हरे घास दिखाई दे रही है झाड़ियां दिखाई दे रही हैं। बगुले दिखाई दे रहे है बगुले चारो तरफ घूम रहे पीछे पानी दिखाई दे रहा है पीछे की तरफ पेड़ दिखाई दिखाई दे रहे है जहां पर हरी-हरी घास दिखाई दे रही है।

एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो की नील रंग सफ़ेद रंग की बनी हुई है जिसपे कांच के शीशे लगे हुए है निचे देखने पर एक बोर्ड लग रहा है जो की नीले रंग का है सो बिजली के तार जा रहे है निचे दुकान के शटर दिखाई दे रहे है।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

यहाँ पर दुकान दिखाई दे रही है जिसके ऊपर बोर्ड लगा है वह नीले रंग का है बाहर की तरफ एक और बोर्ड दिखाई दे रहा है टेबल दिखाई दे टेबल गुलाबी रंग की जिस पर मेज़ कुर्सियाँ रखी है ऊपर की तरफ एक रस्सी बांधी है जिसमें बहुत सारी किताबें क्लिप की तरह लगी हुई है।

चारों तरफ पेड़ दिखाई दे रहे हैं हरी-हरी दिखाई दे रही है बड़े-बड़े पेड़ और पत्ते दिखाई दे रहे हैं पीछे देखने पर बैन दिखाई दे रही है बैन सफ़ेद रंग की है पीले रंग की छोटी सी मेट बैन दिखाई दे रही है काफी मात्रा में बच्चे यहाँ खड़े --

यहाँ पर एक दुकान दिखाई दे रही है जिसपे एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर वह नारंगी रंग से कुछ लिखा हुआ है दुकान दिखाई दे रही है दुकान का शटर खुला हुआ है।